महिला है जो बच्चो को गोदी में उठा कर खड़ी हुई है और हेलिकोप्टर के पास कुछ लोग --

यहाँ एक इंसान के पास बहुत सारे लड़के आये हैं और वो सबसे बाते कर रहे हैं वो |

ये लड़की डांस कर रही है और एक हाथ से अपनी लहंगा को पकड़ रखा है और दूसरी हाथ से उठाने की कोसिस कर रही है उठा रही है |

यहा पर ये स्विमिंग कर रहे है एक लड़की दो बच्चियाँ है और एक आदमी एक औरत और एक बच्ची और पीछे

यहां पर कुछ पूजा कर रही है जैसे छट पूज रही है।